और यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे देख सकते है आप।

और ये एक पार्क लग रहा है कुछ बच्चे पीछे भी बैठे है वो कुछ और काम कर रहे है शायद कोई और गेम्स खेल रहे है।

और चार से पा पाँच से छः के करीब यहाँ लोग बैठे हुए हैं।

बारिश के टाइम ही झरना बना हो ऐसा भी हो सकता है पहले से झरना हो ।

अ बैठे हुए हैं और कुछ लोग आस-पास भी खड़े हुए हैं।

और आस पास बहुत सारी हरी घास उग रही है आस पास और भी कुछ बिल्डिंग्स है।

अअअ दिस इस अअअ यहाँ एक वाइट बिल्डिंग जैसी नजर आ रही है।

पेड़ है वो भी एक मीनार में लगे हुए हैं।

कुछ लोग ने इसे बुक किया हुआ है मेरे हि--

बस बिस के पास एक ऑटो भी है यहाँ पे एक बैंक है एंड बैंक अलावा यहाँ पे ए.टी.एम भी है जहाँ से लोग अपने पैसे निकाल सकते है ये तो सो कैमरा बैंक ए.टी.एम ।

यहाँ पे एक हेयर सलून नज़र आ रहा यहाँ पे दो लोग खड़े है और बहुत अच्छा हेयर सलून लग रहा है यहाँ पे ये ।

और बस के आने का इंतज़ार कर रहे है कुछ बस में बैठ चुके है और कुछ बच पे अ बस के आने का इंतज़ार कर रहे है।

ये एक स्टोर दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैग्गी के पैकेट्स रखे हुए हैं ईपी नूडल्स के पैकेट्स रखे हुए हैं।

और एक खजूर का पेड़ पाल्म पाल्म ट्री है और बिच रस्ते में भी कुछ पेड़ उगे हुए है।

एक सरकारी बिल्डिंग होती है जो कि सरकार द्वारा अल्लोव की जाती है फॉर दिस वर्क --

इनके अलग अलग इंस्टूरेमेन्ट्स जो की वो पढाई में यूज़ करते हैवो--

और कुछ होडिंग्स लगे हुए है यहाँ पे भी।